यह गाजीपुर जिले का एक अस्पताल है जोकि मुख्य चिकित्साधिकारी का एक कार्यालय भी कहा जाता है।

यह एक म्युज़िक का थिएटर रूम दिखाई दे है इस दृश्य में और इसमें स्पीकर रखे गये हैं। सिम सिस्टम रखे गये हैं।

यह सैदपुर स्थित सैदपुर भीतरी एक वन विभाग का एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है।